और साथ में लेस कुरकुरे का समान खाने के लिए रखा हुआ है।

ये एक बाहर की रेस्टोरेंट का पिक लग रहा है।

ये न्यू मोटरसाइकिल एजेंसी लग रही है।

और एक व्यक्ति यहां बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

और बहोत सारे फैन लगे हुए हैं।

जानवरों के हॉस्पिटल की पिक है यहां एक डॉग का--

और इसके आगे एक छतरी दिखाई दे रही है और कुछ सीढ़ियां बनी हुई है और--

पर्चियां पड़ी हुई हैं और एक सिंपल मोबाइल पड़ा हुआ है।

इसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है डॉक्टर अभिषेक आयुर्वेदा हॉस्पिटल है और इसके ऊपर एक और मंजिल है।